इस इमेज में हमें जो मुझे बहुत सारे तार खींचे हुए दिखाई दे रहे है सड़क पर बहुत सारी दुकाने लगी हुई है जिनके ऊपर पन्नी लगी हुई है बहुत सारे आदमी यहाँ पर--